चार नांव दिख रही है दो हरी है एक पिली है और एक लाल --

सफ़ेद कपड़े पहने हुए है और लाल दुपट्टा--

सामने एक छोटा- सा घर दिख रहा है जो सफ़ेद कलर का है और लोहे का नीला बड़ा- सा गेट --

वो बैठी हुई है और वो सफ़ेद कलर की है उसके नीचे चबूत्तरा बना हुआ है वो--

दिख रहा है ऊपर नीला सफ़ेद आसमान दिख रहा है।

ऊँचे पत्थर से आ रही है और निचे कुंए में गिर रही है सफ़ेद पानी दिख रहा है और --

बीच - बीच में पत्थर दिख रहे है और किनारे में बहुत सारे --

सामने बहुत सारी ऊँची-ऊँची बिल्डिंग दिखा रही है जो कत्थे कलर की दिख रही है ऊपर सफ़ेद आसमान दिख रहा है और नीचे--

अक्षरों से रेस्टोरेंट लिखा हुआ है और सामने बहुत सारे --

दोनों ओर सफ़ेद है और उस बोर्ड के ऊपर दो लाइट दिख रही है।

छड़ी लगी हुई है और पीछे इस आदमी की कुछ सफ़ेद सामान रखा हुआ है।